यार इमे तो आ मज्जिद तो बोहोत सुंदर है यार इमे देख जानो ही पड़सी सच मे यार बोहोत खूबसूरत है।